बिग बॉस हेयर सलून है। इस सलून में बहुत सारे लोग बाल कटाने दाढ़ी बनाने फेसिअल कराने के लिये आये हुए हैं।

यहाँ पे बहुत अच्छे से बाल काटा जाता है। फेसिअल किया जाता है। बहुत सारे कुर्सी लगा हुआ है। लोग आये हुए है यहाँ पे लोगो की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे अच्छे से बाल काटा जाता है।

बोहोत सारे मरीज़ यहाँ पे बेड पे लेटे हुए हैं। एक डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है। यहाँ पे बोहोत सारे तरह-तरह की मशीने रखी हुई है। यहाँ पे --

डॉक्टर बहुत अच्छे से मरीज़ का इलाज़ करते हैं। यहाँ पे लोग --

साइकिल खरीदने के लिये यहाँ पे बाहर में टोटो वाला भी खड़ा है। सैनिक साइकिल मार्ट में बहुत अच्छे से --

नगरपालिका पार्क है। इस पार्क बहुत सारे लोग घूमने के लिये आते है यहाँ पे बड़ा सा मैंन गेट लगा हुआ है।

यह दुकान बहुत बड़ा है इस दुकान में बहुत सारे पंखे --

यह एक कैनरा बैंक है। इस बैंक में बोहोत सारे लोग आये हुए हैं। यहाँ पे लोगो की भीड़ लगी हुई हैं। यहाँ पे --